परदे लगे हैं और बड़ा सा होल है।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां कुछ झूले लगे हुए हैं।

काफी सुंदर सजावट लग रही है।

यहां गुब्बारों से सजाया है।

और यह मंदिर काफी सुंदर लग रहा है।

इस होटल में बहोत सुंदर गुब्बारों से सजावट की हुई है।

यहां टेबल कुर्सी रखी है।

सोफे बड़ी बड़ी टेबल कुर्सियां रखी हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ी लाइब्रेरी दिख रही है इस लाइब्रेरी में--

यहां बहुत बड़ी दुकान दिख रही है।

चिप्स कुरकुरे बड़ी बड़ी लड़ी है।

यहां पर एक बहुत बड़ा होल है।

यह काफी बड़ा है और हरा भरा--

इसमें मिठाई चिप्स कुरकुरे केक वगैरा मिलता है।

यहाँ पर बहोत बड़ा प्रोग्राम है।

यहां एक बड़ा सा हॉल है उसमें पंखे लगे हैं।